ऊच उसके चारों तरफ एक लगी हुई है। पीछे बड़े-बड़े पेड़ है। साइड में भी पेड़ है उसके--

सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में कुछ पौधे लगे हुए है और बड़े पेड़ भी है ऊपर एक लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ--

दो बंदर एक साइड में जा रहे हैं पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है।

सामने एक मंदिर टाइप का एक पहाड़ी गुफा दिखाई दे रही है।

कुछ एक डब्बे में रखे हुए हैं कुछ किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो गेट का कलर है वह चॉकलेटी रंग का--

सामने एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सबसे एक साइड में हनुमान जी की फोटो है जो बहोत बड़ी मूर्ति बनी हुई है।

दुकान में एक नीचे अलमारी है। अलमारी पे लिखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग सफेद और सलेटी रंग का है।

सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

कुछ नलकिया डली हुई है और एक साइड में कुछ अलमारी रखी हुई है।

साइड में एक लोहे की पाइप पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने एक समुद्र की फोटो दिखाई दे रही--

सामने एक जंगल की फोटो दिखाई दे रही है।

और एक रस्ता दिखाई दे रहा है।